यहां पे काफी सारी गाड़ियां भी दिखाई दे रही हैं।

यहां पे एक लट्टू भी दिखाई दे रहे हैं।

एक गाड़ी के पीछे हेलमेट दिखाई दे रहा है।

एक कैफ़े की फोटो दिखाई दे रही है।

एक मन्दिर की फोटो दिखाई दे रही है।

एक कांच में फोटो भी दिखाई दे रही है।